और बहुत सारी खिड़कियां भी दिखाई गई है।

यहां पर एक स्टेशन का दृश्य दिखाया गया है।

पर बहोत सारे बच्चे कुछ अपने कार्य कर रहे हैं।

और साइड में एक घर है जिसके ऊपर एक टंकी लदी हुई है।

माल के साइड में एक पेड़ भी है।

और उस पर पिलर देने के लिए रड का बिछाया गया है।

आदमी भी दिखाए गए हैं।

और एक बूट भी लगा हुआ है।

एक चेयर भी है और एक पंखा भी है और एक फ्रिज भी है।

यहां पर एक कपड़े का मॉल दिखाया गया है।

में पंखा और लाइट भी लगा हुआ है।

उसी के साइड में एक पूजा का मंदिर भी है।

कुछ आदमी भी यहां पर दिखाए गए हैं।

और कुछ टंगे हुए भी हैं।

और एक पंखा भी है पंखा का कलर वाइट में है।

बहुत सारे पेड़ भी दिखाए गए हैं।

और निचे कुछ आदमी बैठ कर ये देख रहे है।

कैमरा स्टैंड पर एक कैमरा भी लगा हुआ है।

जिनका कलर हल्का नीला में है।

घर का कलर वाइट में है।

यहां पर सभी बच्चे ड्राइंग करते हुए नजर आ रहे हैं।

साइड में एक थैला भी व्हाइट कलर का है।

जिसके साइड मे एक बड़ा सा घर भी है।

इसके छत पर एक टंकी लदीं हुई है।

यहां पर एक बस दिखाया गया है।

यहां पर एक होटल के जैसा दिखाया गया है।

उसके पीछे गोल्ड कलर का बहुत ही सुंदर बैकग्राउंड बनाया गया है।

बेड का कलर ब्लैक में है और दोनों तकिया का कलर वाइट में है।

आदमी मोबाइल चला रहा है।

बैठी भी हैं दुकान को पुआल और बाँस से बनाया गया है।

जोड़ा चप्पल ऐसे रखा हुआ है।

टेबल पर रखे हुए हैं।

बहोत सारे चेयर और टेबल भी हैं।